और इस रूम के अंदर जो है मिरर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं।

और बच्चों ने व्हाइट ड्रेसेस पहनी हुई है और कुछ बच्चों ने --

और इस शॉप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो मिल जाती हैं।

अह तीन दो खिड़कियां हैं और यहां पे जो है।

ये लहंगा चोली है सारी चीज रखी हुई है।

यहां पे एक शॉप है और रात का टाइम है।

एक लड़का रोये है साइकल लेके जा रहा है।

और हर मशीन के पास में कलरफुल पेंट जो यूज होते हैं वो रखे हुए हैं।

यहां पे जो है बहोत सारी बुक्स जो है वो रखी हुई है।

यहां पे एक पेट शॉप है और उस पेट शॉप के अंदर जो है छोटे छोटे पिंजरे रखे हुए हैं और--

कुछ लोग जो है जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं।

और रोड के बाहर एक्टिवा बाइक्स खड़ी हैं एक आदमी वहां से गुजर रहा है।

और यहां पे जो है छोटे छोटे पौधे हैं।